इधर में कुछ बिल्डिगें दिख रही हैं जो व्हाइट कलर का पेंट है और एक जीप खड़ी हुई है वह भी व्हाइट कलर की है।

पेंट है और एक पर पिंक कलर और ऑरेंज कलर का पेंट दिख रहा है और एक बरक्ष दिख रहा है। वह ग्रीन कलर का है और आस पास कुछ आ रोड दिख रहा।

और आसपास कुछ वृक्ष दिख रहे हैं ग्रीन कलर के और एक ऊपर टॉवर सा दिख रहा है खंडरों जैसा --

इस पिक्चर में आ बॉक्स होम थिएटर रखे हुए हैं ब्लैक कलर के । एक बहोत सारे और एक बोर्ड लगा हुआ है और उसपे शर्मा शर्मा लिखा हुआ है ।

पिक्चर मे एक ना स्विमिंग पूल दिख रहा है तो अ वह थोड़ा सा बीन स्काई ब्लू कलर का है।

पिक्चर में एक रूम दिख रहा है जिसपे डार्क डार्क ब्लू कलर की लाइट जल रही है।

और वह ब्लू कलर के हैं और एक अंकल जी हैं जिनके व्हाइट कलर के बाल दिख रहै हैं एक वृक्ष दिख रहा है वह उसके पत्ते दिख रहै हैं हरे कलर के |